रोड है ऑटो खड़ा हुआ है वह पीछे प्रतीक्षालय है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बहुत बड़ा औ रास रोड है हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

ये खूबसूरत नजारा है पौधे हैं आ-- अस-- ऊपर आसमान दिख रा दिखाई दे रहा है नीचे रास्ता है।

सब बच्चे योगा कर रहे हैं बहुत अच्छा नजारा है।

एक फास्ट फूड का सेंटर है जिसमें कड़ाही है तवे हैं अंडे दिखाई दे रहे हैं कुर्सी है।

ये एक दिवार है जिस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं बहुत पुराना ऐसा लग रहा है बहुत पुराना है वाइट कलर का है।

ऊपर बहोत सारे लाइट जल रहे हैं उपर फूल लगे हुए हैं बहोत खूबसूरत दिखाई --

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं रास्ता हैं पीले कलर का और ये दफ्तर हैं उसमें कुछ लाइनेन्स बने हुए हैं बहोत सारे दरवाजे खिड़कियां लगे हुए हैं नीचे पेड़ों में फूल हैं।

--नीचे जमीन है सूरज चमक रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है बहोत खूबसूरत है पीछे सीढ़ी है।

यहाँ पर कई सारी दुकान है इधर दो बाइक्स खड़े हुए है अ-दो साइकिल हैं ।

हरे रंग का पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान है उसमें व्हाइट कलर का लिखा हुआ है।